चेयर वगैरा भी देखी जा सकती है जो सुंदर लग रही है।

यहां पर बहुत सारी साइकिले एक साथ देखी जा सकती है और ऊपर की तरफ बहुत सारी लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ में कुछ छोटी-छोटी साइलें रखी हुई देखी जा सकती है नीचे की तरफ एक सफेद रंग की --

सामने से कुछ कारों को भी आते हुए देखा जा सकता है यह एक ओवरब्रिज के ऊपर से लिया गया इमेज है और अगल-बगल में कुछ बिल्डिंगे भी देखी जा --

आने जाने के लिए अंदर की जाने के लिए एक गेट बनी हुई है गेट अभी खुला नजर आ रहा है और ऊपर के बोर्ड में बहत अच्छी लाइटिंग की गयी है।

यहां पर एक बड़ा-सा मकान दिखाई दे रहा है जिसके अंदर जाने के लिए एक गेट बनी हुई है और यहां गेट शीशे की है।

यहां पर यह एक बहत ऊपर से लिया हुआ इमेज है और यहां पर बहत सारे बिल्डिंगों को देखा जा सकता है।

सामने एक स्कूटर खड़ी हुई है और अगल-बगल में बहोत सारे पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर एक बड़ी सी दुकान जैसी कुछ दिखाई दे रही है | दरअसल यह एक बड़ा सा बिल्डिंग है जिसके नीचे कुछ साइकिल और स्कूटर खड़ी हुई है ।

यहां पे बहुत सारे कागज के बने हुए डिजाइनों को एक साथ लगाया गया है जो देखने में काफी अच्छे लग रहे है।

ऊपर में नीला आकाश दिखाई दे रहा है एंड अगल-बगल में बहत सारे पेड़-पौधों देखे जा सक्ते है।

और कुछ स्थानो पे घासे नही भी लगी हुई है और कुछ टावर भी देखा जा --

यहां पर सारी महिलाएं पानी में उतरती है और पूजा करती है अगल-बगल में कुछ लोगों को देखा जा सकता है।

ऊपर में लाइट की --

सामने की तरफ एक यहाँ पे एक बैठने के लिए कुर्सी रखी हुई है और इसके दूसरी तरफ भी एक सोफा रखा हुआ देखा जा सकता है।

ऊपर से पानी गिरता हुआ साफ देखा जा सकता है। सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है जिसके ऊपर कुछ फूल वगैरा लगे हुए देखे जा सकते है

यह देखने में काफी अच्छा लग रहा है अगल-बगल में भी कुछ और भी मकाने देखी जा सकती है।